इस फोटो में कार दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एशियन पेंट्स पेंट्स का बोर्ड लगा हुआ है एक लड़का बैठा हुआ है।

इस फोटो में एक लड़का हैं।

टी_वी भी रखा हुआ है येलो रंग की दीवार नजर आ रही है।

और काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि पैदल चल रहे हैं।

और सुबह का समय है इस फोटो में--

इस फोटो में काफी सारे पीछे--

दिन का समय है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक झूला दिखाई दे रहा है लटकने वाला झूला भी दिखाई दे रहा--

सामने लिखा हुआ है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड गो डायग्नोस्टिक ।

और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है उसने ब्लू कलर की जींस पहनी है ब्लैक कलर के सैंडल पहने हैं एक ईंट रखी हुई दिखाई दे रही है।

और लड़के का फेस नहीं दिखाई दे रहा--

अंदर ईंटे नजर आ रही हैं।

नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है।

और एक कार खड़ी हुई है जो की वाइट कलर की है।

जो की स्कूल की यूनिफॉर्म में है।

इस फोटो में एक कॅफे दिखाई दे रहा हैं दीवार पे लिखा हुआ हैं एवेन्यू फोर्टीन कॅफे यलो रंग की दीवार हैं।

और यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है।

और एक पानी की बोतल है बाल्टी रखी हुई है बाहर--

और सामने बहोत सारे घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ औरतें दिखाई दे रही है जिन्होंने शॉल ओढ़ रखी है।

इस फोटो में काफी सारी किताबे दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने टेंट लगा हुआ है।

सामने एच_डी_एफ_सी की बैंक नजर आ रही है बाहर लिखा है नो पार्किंग कुछ आंटियां बैठी हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।